इंसान के हाथ में फोन भी है।

इस बिल्डिंग में खिड़कियां भी बनाकर है।

उसके हाथ में एक छाता भी है।

साइड में एक गाड़ी और ऑटो भी रखे हैं।

स्कूटी के सामने एक नाला भी गिर रहा है।

बिल्डिंग के सामने दो गाड़ी भी है।

साथ में गाड़ी के टायर्स भी रखे हुए है।

इस फोटो में मुझे एक रूम दिख रहा है।

ऊपर में बहुत सारे लाइट्स भी जला कर है।

सामने में बहुत सारे इन्सान लोग भी हैं।

ऊपर में आसमान भी दिख रहा है।

सामने में पत्थर से बनाया हुआ एक दीवार दिख रहा है।

वो बाउल के अंदर पानी भी है।

और बैठने के लिए सोफा भी रखा है।

ऑटो के बाहर एक इंसान खड़ा हो रहा है जिसके गले में कपड़ा लपेट हुआ है।

ऊपर में बहुत सारे फेन भी लगाया हुआ है।

और रेस्टोरेंट के अंदर बहुत सारे टेबल्स भी लगाए हुए हैं।

टेबल्स के ऊपर बहुत सारे टिशू पेपर भी रखकर है।

इस फोटो में एक बड़ा सा दुकान दिख रहा है।

सामने में बहुत सारे ग्लास और मग्गे भी रखे हुए हैं।

और बैठने के लिए बहोत सारे चेयर्स भी हैं।

फोटो में एक बड़ा सा ग्राउंड दिखाई दे रहा है।

घर के ऊपर रेड कलर का टीना भी लगाया हुआ है।

सामने में बहुत सारे गोट्स भी दिख रहे हैं।

येलो पिंक और वाइट कलर के फूल है।

जहां बहोत सारे गाड़ी और स्कूटी सभी है।

और सामने में बहोत सारी मूर्तियां भी बना कर रखी हैं।

पर्दे के नीचे एक डस्टबिन भी रख कर है।

बैठने के लिए बहोत सारे सीट्स भी हैं।

जो की वाइट कलर से पेंट किया हुआ है।

पत्थर के ऊपर बहुत सारे ग्रास भी निकल कर है।

नीचे में बैठने के लिए चेयर भी रखी है।

इस फोटो में मुझे एक घर दिख रहा है।